यह एक पेट्रोल पंप का चित्र है जिसमें दो बड़े बड़े दरवाजे नजर आ रहे हैं और उसमें लोहे के गेट लगाए गए हैं।

यह एक दुकान का चित्र है जिसमें लोहे की रेक में काफी सारे डिब्बे रखे गए हैं और थीं लोहे की रेक रखे गए हैं।

छोटे बड़े पत्थर भी रखे नजर आ रहे हैं।

नीचे के फर्श में काफी सारे कारपेट लगाए गए हैं।

यह एक मेन रोड का चित्र है जिसमें एक बस खड़ा नजर आ रहा है।

और बाहर में दो गाड़ियां खड़ी हुई नज़र आ रही हैं।

पांच टेबल लगाए गए हैं और टेबल का कलर लाल है।

पीछे की साइड में काफी सारे बिल्डिंग नजर आ रहे हैं।

काफी सारे लाइटें भी लगाए गए हैं और कागजों से सजाया गया है।

और काफी सारे पोस्टर भी लगाए गए हैं ।

एक बड़ा सा पोस्टर भी लगाया गया है और एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

यह एक छोटे से घर का दृश्य है जिसके बाहर की साइड में एक कड़कट निकाला गया है।

पीछे कि साइड में काफी बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

नीचे की साइड में एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है जिसमें पानी भर गया है और बच्चे खेल रहे हैं।

यह एक छोटे से रेस्टोरेंट का चित्र है इसमें तीन टेबल नजर आ रहे हैं।

एक टेबल के ऊपर बोतल रखा गया है।

अ एक दुकान के अंदर का चित्र है जिसमें काफी सारे रेक में सामान रखे गए हैं।

और टेबल नजर आ रही है जिस पे काफी सारे तार लगाए गए हैं।

ऊपर की दीवार पर काफी सारे लाइटें भी लगाए गए हैं।

यह एक स्कूल का चित्र है जिसमें काफी सारे खिड़की नजर आ रहे हैं और उसमें शीशे लगाएं हैं।

पीछे की दीवार का कलर पीला है।

नीचे की जमीन पे भी टाइल्स लगाया गया है।

यह एक डांस शो का चित्र है जिसमें काफी सारे व्यक्ति लोग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।

जिसका कलर गुलाबी है और नीचे की जमीन पे काफी सारे सूखे पत्ते और गिले पत्ते नजर आ रहे हैं।

काफी सारे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं जिसका कलर हरा है।

नीचे की जमीन पे टाइल्स लगाया गया है।